एक बड़ासा शटर लगा हुआ है एक लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

जमीन पर हरियाली और मिट्ठी दिख रही है।

ये एक जगह का चित्र है। जिसमे एक घर दिख रहा है। जमीन पर हरियाली बिछी हुई है।

यह एक जगह का चित्र है।